समझ में शायद अ गुरुद्वारा ही आ रहा है औ काफी अच्छा गुर - गुरुद्वारा है ये। काफी सुंदर है और लग --

उन्होंने इस मस्जिद की डेकोरेशन काफी बेहतरीन तरीके से की है जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं।

उसका बैनर और उसमें लिखा हुआ है तो --